नर्सरी में बहुत सारे पेड़ छोटे मोटे पौधे हैं और गमले भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें इनको सजा कर रखा जा सकता है।

यह चित्र में एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर सामने की ओर--